एक दुकान के अंदर का फोटो हे जिसमें बहोत सारी मिठाइयें जमी है ऊपर की लाईन में अलग एक तरफ कोने में लड्डू है एक तरफ कोने में बालूशाहीं हैं।

उसमें चेयर रखी है कंप्यूटर रखा है और सामने तीन पिलर हैं ऊपर फैन लगा है दो लाइटें लगी हुयी हैं ट्यूब लाइट । एक एक्सहॉस्ट फैन लगा हुआ है।

ऊपर शेड डला हुआ है एक पेड़ लगे हुए है बोहोत सारे पेड़ है अलग-अलग तरह के पेड़ है नीचे का रखे हुए है टाइल्स लगे हुए हैं।

अजवा खजूर है सात सौ तीस रुपये किलो लिखा हुआ है इसपे दो सौ रूपए किलो लिखा है पांसौ रुपये किलो लिखा है वाईट कलर के बोर्ड पर।

दो आधी ग्रीन बॉटलें है बीच में एक वाईट और साइड में एक ब्लू बोटल अ बॉटलें रखी हुई है ऊपर ब्लैक कलर से लिखा हु --

एक ट्रक खड़ा हुआ है एक होटल है उसकी गुमठी है--